यह एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल है इस स्कूल का नाम सेंट मैरी स्कूल है।

यहाँ सीबीएससी बोर्ड के आधार पर पढ़ाई होती है यहाँ का टीचिंग स्टाफ काफी अच्छा है।

जेसे जीन्स पेन्ट शर्ट टी-शर्ट जोकर्स सभी प्रकार के मेंस वियर यहां मिलते है।

एक खेत है खेत में फसल लगी है।

इस कोचिंग का नाम दीक्षा कॉमर्स कोचिंग है।

यह एक रेलवे क्रॉसिंग है जब रेलगाड़ी रेलवे ट्रक पर आती है।

इस डिब्बे में शीशे की खिड़कियां और दरवाजे लगे हैं।

ब्रिज दिखने में काफी सुंदर है और मजबूत है।

चाय के साथ-साथ यहां पर बिस्किट मठरी नमकीन चिप्स भी मिलते हैं यहां की चाय लोग दूर-दूर से पीने आते हैं।

यह स्कूल सी_एस_सी बोर्ड पर आधाररित कार्यकर्म पर चलता है।